ये एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहां पर सामने की ओर येलो कलर में एक टेंपो दिख रहा है।

ये एक सुनार की दुकान का दृश्य है जहां पर एक बड़ा सा काउंटर दिखाई दे रहा है।

और दुकान के बाहर एक वाइट कलर की टेबल भी पड़ी हुई है।

काउंटर के बाहर बिसलेरी की कुछ बोतल भी रखी हुई हैं।

काउंटर के ऊपर काफी सारी ब्रेड की थैली भी रखी हुई दिखाई पड़ रही हैं।

यहां पर एक व्यक्ति नाव चलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा आसमान भी दिख रहा है।

पुल के नीचे छोटी छोटी हरी कलर की घास दिख रही है।

दीवाल पर कई सारे सेलिब्रिटीज के फोटो लगे हुए हैं।

ये एक बहोत बड़े ग्राउंड का दृश्य है यहां पर जमीन में छोटी छोटी घास दिख रही है।

एक बहोत बड़ा आसमान दिख रहा है जहां पे--

यहां पर कई सारे ब्लू कलर के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं।

एक ब्राउन कलर का पर्स भी रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

जहां पर काउंटर के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर कई सारी भगवान की प्रतिमाएं दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर काफी सारी हरी हरी घास भी दिख रही है।

इस द्रश्य में काफी सारे गन्ने भी रखे हुए हैं।

सामने वाली दीवाल पर एक ब्लैक कलर की एल_इ_डी टी_वी भी लगी हुई है।

नीचे की तरफ काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।